और यहां पर आस - पास की तरफ कुछ बोल्डर जाली भी बोल्डर लगे हुए हैं ।

फुटबॉल खेल रहे हैं ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है।

इस इमेज के अंदर मुझको --

इस इमेज के अंदर एक बहुत बड़ी।

और ये जो आलिशान बांग्ला है ये--

इस इमेज के अंदर मुझको एक --

इस इमेज के अंदर मुझको एक --

वो ब्लू है और कुछ बस का कलर व्हाइट और ब्लू कलर का है।

इस इमेज के अ अंदर मुझको --